दिखाई दे रही है यहा पर महिलाए योगा करती हुई नजर आ रही है यहा पर काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे है जगह काफी बड़ी दिखाई दे रही है यहा पे एक लड़की खड़ी हुई नजर आ रही है।

यहा पर एक चैर दिखाई दे रही है चैर का कलर पीला दिखाई दे रहा है पीछे काफी सारे पेड़ नजर आ रहे है पेड़ काफी हरे भरे दिखाई दे रहे है।

यहा काफी सारी दिखाई दे रही हैं यहा पे कुछ बॉक्स बने हुवे हैं यहा काफी सारी लाइट दिखाई दे रही हैं।

प्ले ग्राउन्ड दिखाई दे रहा हैं प्ले ग्राउन्ड काफी बड़ा दिखाई दे रहा हैं यहा पर कुछ लोग खेलते हुवे नजर रहैं हैं।

यहां पर काफी सारे लोग एक्सरसाइज़ करते नजर आ रहे है ऊपर एक मेट दिखाई दे रही है मेट का कलर हरा नजर आ रहा है पीछे कुछ पेड़ नजर आ रहे है पेड़ का कलर हरा दिखाई दे रहा है पीछे कुछ लाइट नजर आ रही है।

इसमे स्विमिंग पूल नजर आ रहा है यहां पर काफी सारी लाइट दिखाई दे रही है यहां पर ज्यादा स्पेस दिखाई दे रहा है।